जोकि वाइट कलर हैं जिस पर राइस रखे हैं राइस पर कोरिएंडर लगा हुआ है ये फ्राइड जो राइस हैं जिसमें एक स्पून लगी हुई है जो की स्टील की है ब्रा --

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसपर कुछ लिखा हुआ है नीचे देखने पर शीशे कांच के शीशे दिखाई दे रहे है इस के आगे सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं मोटर साइकिल स्कूटर खड़े हैं सड़क दिखाई दे रही है वहाँ पर रिक्शे खड़े हुए हैं वहाँ कुछ लोग जा रहे हैं कुछ लोग रिक्शे पर बैठे हुए हैं।

यहाँ पर एक यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है पानी में एक जीव दिखाई दे रहा है जोकि हरे रंग का है उसने अपना मुँह बाहर निकला हुआ है।

ये समुद्र का द्रश्य है अंदर की समुद्र के अंदर की जो वनस्पति होती है वो दिखाई दे रही है।

हरे रंग का पाइप जा रहा है एक आदमी है जो कि उस सीवर में कुछ कर रहा है उसने सफेद रंग की कैप लगाई हुई है।

यहाँ पर एक टीन शेड दि‍खाई दे रहा है टीन शेड के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने हाफ जेकेट पहन रखी है सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी हुई है और उसके हाथ में एक हेलमेट लगा हुआ है ।

और अब हमें देखने पे दो बड़े-बड़े ड्रम दिखाई दे रहे हैं पीछे बोर्ड लगे हुए हैं जिन से ये तार लगे हुए हैं।

यहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही है जिसमें बोहोत ज्यादा पानी दिखाई दे रहा है काफी सारे लोग हैं जो कि स्नान कर रहे हैं।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

और एक मैदान दिखाई दे रहा है मैदान मे एक बिलडिंग दिखाई दे रही है जो की सफ़ेद रंग की है जिस पर नीले रंग की दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

दरवाजे खुले हुए हैं एक महिला खड़ी है जो की सफ़ेद रंग की है पीछे देखने पर एक और महिला दिखाई दे रही है जिसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है।